यहां हमारे सामने स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही है जो एक चर्च के अंदर की है।

जिसकी वजह से यह पूरा चर्च पिंक दिख रहा है चर्च के अन्दर और बाहर साइड फुग्गे भी लगे हुए है यहाँ पे काफी सारे लोग भी दिख --

जो एक लाइब्रेरी के अंदर की है यहां पे एक आदमी अपने हाथ में एक बुक पकड़ के फोटो खींचवाता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहा हमारे सामने स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही है जो एक मैरेज गार्डेन की है यहा पर लाइट और आर्टिफ़िश्यल फूलो से सजावट की गई है।

यहा पर लोगो के बैठने के लिए चेयर और टेबल है यहा पर बहोत सारे लोग भी दिखाई दे रहे है।

यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ दिखायी दे रहा है जिस ने काली टी-शर्ट और ब्लू पेंट पहना है डेम के साइड में बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे है।

यहां पे एक पतला सा आदमी अपनी दुकान लगा के खड़ा हुआ है तो वहीं उसके साइड मे लोग चाय पीने के लिए बैठे हुये दिखाई दे रहे हैं।